यहां पर एक बैठने के लिए चेयर हैं बहोत सारी और ई --

एक बिल्डिंग का व्यू है इसपे पराठे में कुछ लिखा हुआ है और दार्जिलिंग का ये व्यू है।

और यहां पर बहोत हरियाली है बहोत घास फुस है सुखी हुई।